यहां पर बहुत से डेकोरेट किए गए हैं।

यहां बहुत से व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

सूरज का किरण पानी में आ रहा--

यहां पर बहुत सी लाइटें जली हुई है।

यहां पर बहुत सी लाइटे जली हुई है।

जो हरे रंग के है सामने एक टावर दिखाई दे रहा है।